और एक पुतले बगल में कपड़े का दुकान है जिसमें एक पुतली--

यहां पे घर बन रहा है घर बनाने का स्टार्टिंग किए हैं यहां पे मजदूर लोग बीम खड़ा कर रहे हैं और नीचे को उठाओ --

पानी हरा दिख रहा है और किनारे-किनारे में घास है कमल के फूल है जलकुंभी है और पानी में उगने वाले बहोत से पौधे हैं और किनारे में जीव --